ये चारों ओर काफी कुर्सी लगाया गया है।

यह देखने में काफी सुन्दर है इसके चारों और पेड़-पौधे हैं जो देखने में काफी हरे-भरे हैं।

यहाँ पत्थर के काफी सारे तरह-तरह डिजाइनिंग के पंछी बनाया गया है। या वाइट कलर का है। यह इसके चारो और तरह-तरह के डिजाइनिंग किया गया है।

इसके चारों ओर तरह-तरह के पेंटिंग और डिजाइनिंग की गयी है ।